हां एक मकान की तस्वीर दिख रही है।

बस के पीछे कुछ डंपर भी रखे गए है।

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है मकान के बाहर एच डी एफ सी बैंक लिखा हुआ है मकान के बाहर--

गैरेज की दुकान दिख रही है। गैरेज में एक मारुति का पेंट किया जा रहा है।

बोर्ड पर ट्यूबलाइट जल रही है। मकान के सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं।

रोड के किनारे मकान दिख रहे हैं। मकान के पीछे कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

दुकान मे कोई सामग्री भी रखा गया है दुकान मे रैक भी बना हुवा है दुकान मे फ्रिज दिख रहा है।